और मैं देख रहा हूँ कि यहां की जो दृश्य है वो काफी जो है सो मतलब की सुंदर है।

लेकिन हां मतलब की सटे-सटे घने हैं घर हैं।

बगल की भी एक दुकान है कुछ बच्चे दुकान के पास हैं जो कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं एक बाइक लगी है साइड वाले में।

सामने आस-पास कुछ पेड़-पोधे है जो साइड से नदी के दोनों तरफ से है जो पेड़-पौधे से घिरे है और यह जल --

यहाँ पे सामने एक बैंक है जिसमें ये बैंक ऑफ बड़ोदा है लिखे गए हैं बोर्ड पे।

सामने एक बाइक लगी है वैसे अभी तो ये बंद है और सामने भी कुछ है कुछ तो दिखाई नहीं दे रही है चूंकि कोई लोग यहां पे है नही।

दुकान या तो ये कपड़े वाले दुकान हैं और बहुत सारे कपड़े जैसे की साड़ियाँ वगेरह ये सब भी रखी हैं।

और या तो उस टाइप की कोई स्थान ब्यूटी पार्लर वैगरह यह लग रही है।

कुछ लोग तो आस-पास दिख रहे है इसमे लेकिन यह आस-पास दिखाई नहीं दे रही है कि ये कोई होटल या फिर दुकान --